यहां पहाड़ दिखाई दे रहा है यहां की पहाड़ों में हरा भरा--

एक सन एक गुलाबी कलर का घर है। एक व्हाइट कलर का घर है। जिसमें व्हाईट कलर का पेंट हुआ है और यहाँ पे --

नीचे में उसका गमला संतरा कलर का है और नीचे के--

धरती एकदम साफ सुथरी दिखाई दे रहे हैं और--

यें बहुत सारे कपड़े हैं और हरे--

यहां पे घर दिखाई दे रहा है जिसका ऐसा लग रहा है कि पुराना घर है और आगे में एक गाड़ी खड़ी है और--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

नीचे का धरती में लगता है की टाइल्स लगा है क्या?

तलाब जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे घास भूसे--

और पेड़ पौधे बहुत सारा दिखाई दे रहा है। हरा भरा एकदम दिखाई दे रहा है।

यहां एक सुंदर सा घर दिखाई दे रहा है जिसमें यहां--

ये इसका इतना सुंदर डिजाइन है काला कलर का पेंट है नीचे का ऊपर का वाइट कलर का है।

यहाँ पर मुझे एक कैची भी दिखाई दे रही है।

और यहां पर बहोत सारी ऐसी चीजें भी दिखाई दे रही है जो कि यूज करते है।

जहां प कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं।